मुझे इस इमेज में एक समुन्द्र दिखाई दे रहा है समुन्द्र के बिच पर कुछ नावे रखी हुई है यह नावे दिखने में काफी अच्छी लग रही हैं।

तरह-तरह के पोस्टर लगे हुए है एवं कुछ सीढिया भी दिखाई दे रही है इसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और एक लड़की अंदर जा रही है इसमें कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है।

मुझे इस इमेज में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है पुरे ग्राउंड पर ग्रीन हल्की घास है और एक बड़ा सा खम्भा दिखाई दे रहा है जो बिजली का है।

इस इमेज में मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बिलडिंगे दिखाई दे रही है एक बिलडिंग वाइट कलर की है और दो बिलडिंग रेड एवं वाइट कलर की है।

इस इमेज में मुझे बहोत सुन्दर बिलडिंग दिखाई दे रही है यह बिलडिंग तीन मंजिल है इस बिलडिंग अम्म्म-- में बहोत सारी विंडो लगी हुई है एवं स्टील की--